यहां पर बहुत सारे टेबल और कुर्सियां लगाई गई है यहां एक शीशा भी लगाया गया है।

यह एक दुकान का दृश्य है जिसका नाम रखा गया श्री दुर्गा भंडार।

क्लीनिक प्लस शैंपू पर दिखाई पड़ रहा है चाय पत्ती नेवर टी दिखाई पड़ रहा है अमूल का दूध रखा हुआ है।

एक लेडीज हाथ में चप्पल लिए हुए पानी में उतरी है।

बगल में एक स्कूटी लगी है जो कि व्हाइट कलर में है।

यहां पर बहुत सारे आदमी आए हुए हैं।

कुछ गुलाब के फूल हैं जो दिखाई पड़ रहे कुछ मैरीगोल्ड है।

चक्का खोल दिया गया है सारी का और उसमें टायर को बदला जा ला है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

दूसरा बच्चा यहां बैठा हुआ है जो कि ब्लू कलर का टीशर्ट और ट्राउजर पहना है शीशे की ओर देखा रहा है।

और इसके चारों ओर पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यह एक स्थान का दृश्य है जहां पर प्लस साइन का सीन दिखाया गया है।